ये इ रोड है जो की बहुत अच्छा लग रहा है। रोड बहुत सुंदर लग रहा है खूबसूरत भी है बहुत सुंदर है।

एक पूरा पहाड़ है जो कि बहोत अच्छा लग रहा है देखने में खूबसूरत भी है अ यह तार है और यहाँ पर बहुत बड़ा-बड़ा पेड़ भी है और जंगल झाड़ भी है बहुत खूबसूरत जगह लग रहा है ।

ये पूरा पानी पानी दिख रहा है और यहाँ पर है की पेड़ पौधे हर चिज है यहाँ पर।

यहां पर इबलु लिखा है जो की ये दुकान है जो की बहुत खूबसूरत दुकान है।

और यहां पर ए.टी.एम. मशीन लगाया गया है और ऊपर जाइये और काम करिये अपना।

जो की अंदर है और बाहर भी लोग हैं।

और यहाँ पर तार का पेड़ भी है बहुत अच्छा है। पेड़ पौधे भी देख रहा है यहां --